येह वाओ कितना मस्त है।

यहां पर देखिए इतना अच्छा है कि मत पूछो बहुत सुंदर लग रहा है ये देखिए कितना सुंदर है ये पपीता है ये एएएए इधर भी है बहुत सारा फले लग रहा है बहुत सुंदर है इतना अच्छा फल है मत पूछिए।

क्या लुक है यहां पे इतना सुन्दर लग रहा है इतना अच्छा लग रहा है मत पूछिए बहुत अच्छा लग रहा है।

यहां पर इ झारखंडी गाना की है।

एक रंग की सुंदर--

उम् दीवाल भी कला है।

पूरा गांव इकट्ठा है आरी से खोद के निकालेंगे कुछु जरूर कुछ होगा यहां पर।

यहाँ कल सरस्वती पूजा की तरफ से सभी डांस कर रही है।